पीछे कुछ बैनर लगा दिख रहा है एक साइड पाइप लगे दिख रहे है जैस्ट लोहे के पाइप दिखाई दे रहे हैं पीछे कुछ एक बैनर लगा है जो नीले कलर का दिख रहा है ऊपर टेंट लगा है जो सफेद और पिले और गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति सामने खड़ा दिख रहा है।

बंदर की महिला जाती दिख रही है। छतरी लेकर राखी दिख रही है सामने व्हाइट कलर की दीवार हे। कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है पास में काफी छोटा सा दिखाइ--

नदी के ऊपर से ज्यादा ओपन का फोटो दिखाई दे रहा है फूलों के नीचे पिलर बने हुए दिख रहे है और आइसे ट्रेनिंग दिख रही है।

यह किसी कन्स्ट्रक्शन साइड का काम का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके साइड में कुछ सडीया खड़ा दिखाई दे रहे हैं और उनके नीचे कुछ ल लकड़ी ओ से बनाया हुया डिजाइन इया उनका कॉलम दिखाई दे रही है।

ई में खड़ी नाव दिखाई रही हैजो लकड़ी की दिखाई दे रही है पीछे भी एक नाव खड़ी हैलखनऊ के ऊपर कुछ लकड़ी के शेर बना हुआ दिख रहा है कुछ बलिया लगी दिख रही है।

बाइक के ऊपर हैलमेट दिखाई दे रहा है में कुछ एंगल सेट का दिखाई दे रहा है नीचे घास का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है वह मुझे खुला मेंदान दिखाई दे रहा है।